पाइप का रंग कला है मैकेनिक ने अपने सरपर पीले कलर का हेलमेट लगा रखा है उसकी पीठ में कई सारे पट्टे बधे हुए है सुरक्षा के लिए।

बगल की तरफ एक महिला और एक छोटा सा बच्चा खड़ा प्राथना कर रहा है दीवाल पर घडी लही हुई है बगल की तरफ फुलझड़ियाँ लगी हुई है।

दृश्य मछली मंडी का दृश्य है इसमें कई लोग मछलियों को काट के दूसरो को बेच रहे है।

यह दृश्य एक मैकेनिक के यहां का दृश्य लग रहा है इसमें एक आदमी बैठा हुआ है एक मैकेनिक मोटरसाइकिल को बना रहा है

यह दृश्य एक बुक सेंटर के अंदर का है जिसमे एक आदमी कुर्सी की बैठा हुआ है और बुक्स को बेच रहा है |

यह एक बस का दृश्य है बस का रंग लाल है उसपर फूल की मालाएं लटकी हुई है उसके सामने एक आदमी लाल शर्ट पहने हुए हाथ में मोबाइल लिए खड़ा हुआ हैं।

पूल के निचे से लिया गया दृश्य है ऊपर के तरफ पूल पे कई लोग खड़े हुए है निचे की तरफ पानी में कई लोग पूजा अर्चना कर रहे है |